और उसका बाहर में एक बड़ा सा फूल का माला है।

और एक प्लास्टिक भी है।

और उसका पीछे में एक पानी है।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

और बहुत सारा बिस्किट है।

और कपरा का ऊपर में बहुत सारा कार्टून दिखाई दे रहा है।

और साइड में बहुत सारा फ्लावर पॉट्स भी है।

एक घर दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा बॉक्स है।

और बहुत सारा कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

और दुकान में बहोत सारा सामान है।

और फील्ड में एक गाय है।

यहां पे एक दुकान है और दुकान में बहुत सारा मोबाइल है।

और बहुत सारा लाइट है।

और एक छोटा सा बॉक्स है।

और दो ठो सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

और दो ठो चेयर भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा कार्टून्स भी दिखाई दे रहा है।

और एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बिल्डिंग है।